एक बड़ा सा ट्रक दिखाई दे रहा है ।

एंट्री पॉइंट के अंदर मे बहुत सारे बेंच और डेस्क रखे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

एक महिला दिखाई दे रही है उ --

ऑटो दिखाई दे रहा है।

दो बाइकें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

मंदिर के पीछे साइड पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हरे और लाल रंग की कार्पेट बिछी हुई दिखाई दे रही है।

अंदर में एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

एक टीन शेड बना हुआ दिखाई दे रहा है उसके अंदर कार रखी हुई दिखाई दे रही है।